यह सारे आदमी गर्दन को झुका कर खड़े है हमे दीवार पर घड़ी और कुछ बलून लगे हुए भी देखने को मिल रहे है देखने मे यह द्रश्य बहोत ही अच्छा लग रहा हैं।

एक बस स्टॉप का है यहाँ पर हमें बहोत सारी बसें दिखाई दे रही हैं वहीँ हम यहाँ पर एक बस में लोगों को चढ़ता हुआ देख पा रहे हैं।

यह बड़े बड़े पोस्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए है देखने में यह जगह काफी सुंदर लग रहा है हमें यहाँ पर पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

हमे बच्चे जंप करते हुए दिखाई दे रहे है इनमे से कुछ बच्चे येल्लो टी-शर्ट पहना हुआ है देखने में ये दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये सारे हमे बहुत ही एंजौय करते हुए दिखाई दे रहे है ।

देखने में यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है दूर हमें पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं।